और मंदिर पर लिखा है जय जय महादेव और ऊपर ॐ लिखा हुआ है इस इमेज में हमें --

कुछ उड़ रहे हैं कुछ अपना खाना-पीना खा रहे हैं और कुछ चल रहे हैं।

इस इमेज में हमें बहोत सारे पक्षी उड़ते हुए नज़र आ रहे।

इस इमेज में हमे एक कपड़े की शॉप नजर आ रही है।

दुकान के ऊपर बहोत सारे बोर्ड लगे हैं जिनमें से सबसे बड़े बोर्ड में यह लिखा है।

इस इमेज में बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई है।

और बैलून से इसकी सजावट की गई है व्हाइट कलर --

खड़ा है और शॉप का नाम है स्मार्ट --